कुर्सियां दिखाई दे रहीं हैं और छत के ऊपर मुझे सीलिंग पर लाइट जलती हुई भी दिखाई दे रही है।

और सामने की तरफ कुर्सियां रखी हुई हैं।

और यहां पे एक घास के पेड़ भी दिखाई दे रहे--

सामने मुझे बहोत बड़ा सा जंगल दिखाई दे रहा है।

और यहां पे मुझे बहोत छोटे छोटे पौधे भी दिखाई दे रहे है।

और यह आदमी सीढ़ी पर खड़ा है।

बहुत सारे बालू गिरे हुए हैं।

सामने के तरफ मुझे बहोत सारे घर दिखाई दे रहे है।